इस दृश्य में हमे एक शॉप दिखाई दे रहा है जो कि एक जनरल स्टोर का शॉप है इसकी दृश्य में हमें बहुत सारी चीजे दिखाई दे रही हैं।